यहाँ पे एक फूल दिखाई दे रहा है बड़ा सा और जो फूल है वो लाल और सफ़ेद कलर है।

और रोड के उस साइड भी मकान बने हुए हैं मकान के सामने भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पे बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे भगवान शिवजी की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और उनके हाथ में बड़ा सा त्रिशूल रखा हुआ है।

जिसपे सब पेमेंट करते हैं और पीछे एक बड़ा-सा फ्रिज है जिसमें --

एक चल रहा है एक निचे बैठा है बड़े से खम्बे के निचे और उस खम्बे के निचे गोल धारी --

कुछ-कुछ घास लगी हुई हैं और मिटटी पड़ी है जो लाल कलर की दिख रही है। बोहोत बडा सा एक टॉवर दिखाई दे रहा है।

बीच वाली जो लड़की है उसने सफ़ेद टी-शर्ट और नीला जीन्स पहना हुआ है पीछे काले कलर का बडा सा --

सामने तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहनी है।